यहाँ पे बोहत से आदमी है यहाँ पे जो की काम कर रहे हैं। यहाँ पे ढलाई का कम हो रहा है जो छत या कुछ है। यहाँ ढलाई कर रहा है यहाँ पे बड़ा सा मरकरी लगा हुआ है।